यहाँ पर शादी हो रही है। बहुत बड़ा गार्डेन है ए बहुत सारी चेयर्स लगे हैं। बहुत बड़े-बड़े स्पीकर्स लगे है। एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है। जहा से एक अंकल आ रहे--

और माउस रखा है लैपटॉप रखा है माइक रखें हैं।